इस तस्वीर में हमें एक मार्केट दिखया गया है। जिसमे बहुत से लोग घूम रहे हैं।

एवं कुछ बच्चे तथा औरतें और व्यक्तियों कि तस्वीर लगी हुयी है।

इस तस्वीर में हमें लाल रंग व सफ़ेद रंग की ईमारत को दिखाया गया है जिसके नीचे पीले शर्ट में व्यक्ति --

जिन पर बच्चो बूढ़ो औरतो व्यक्तियों की फोटो लगी हुए हैं। वही नीचे की ओर फिजिक्स वल्लाह लिखा है।

लीबर्स क्लासिस एस.एस.सी बैंक रेलवे आदि लिखा हुआ है। वहीं निचे की ओर एक व्यक्ति खड़ा है।